यहाँ पर कई बच्चियाँ एक साथ देखी जा सकती है जिन्होंने एक बोहत अच्छी पेंटिंग बनाई हुई हैं और यह चार बच्चियाँ एक साथ खड़ी हो कर के इस को पेंटिंग को दिखा रही हैं।